कुछ लोग खड़े हुए कुर्सियाँ रखी हुई हैँ सामने काफी सारे छोटी-छोटी दूबा लगी हुई है और कुछ पेड़ पौधे बड़े दिख रहें हैं।

एक लंबी सी नदी बनी हुई हैऔर बगलों में काफी सारे पत्थर-कंकण डले हुए हैं और यहाँ पर कुछ वड़ि-वड़ि चट्टा-न भी रखी हुई हैं। सामने वड़े-वड़े --

रखी हुई है जिसमें कांच लगा हुआ है कुछ मशीन यहाँ पर रखी हुई है नीचे एक लैपटॉप भी रखा हुआ है ब्लैक की कुर्सी रखी हुई है और यहाँ काफी सारा सामान रखा हुआ है।